और हरी हरी घास के ऊपर यह जो बाइक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है दिखाई दे रही है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर एक मशीन दिखाई दे रही है और सामने देखिएगा कुछ पैकेट्स नजर आ रहे हैं।

एक चित्र बनाया हुआ है माता जी का जिस पे लिखा है दुर्गा देवी मां अरुण राय--

ये और टाटा टू टाटा टू लिखा हुआ है और बिजली के खंबे है लाइटे है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा किचन नजर आ रहा है जहाँ पर देखिएगा फ्रिज है।

और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है लड़का जिसने पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है और ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई है।

हेलो फ्रेंड देखिएगा काफी बड़ा मैदान दिख रहा है यहाँ पर जो कि राउंड शेप में है गोल शेप में है और आसपास देखिएगा--

घर बने हुए बिल्डिंग बनी हुई है और काफी सुंदर सा यह मैदान दिख रहा है।

यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक सड़क नजर आ रही है और पास में ढेर सारे झंडे दिख रहे हैं जो कि झंडे लगे हुए हैं ढेर सारे--

और देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है सामने जो की ठीक से मुझे नजर नहीं आ रहा है।

और हरी-हरी सब्जियां भी दिख ही रही है और बोरे दिख रहे हैं बॉटलों में देखो बॉटलें दिख रही हैं कलर की बाल्टी दिख रही है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर काफी बड़ा क्रिकेट का मैदान नजर आ रहा है जिसमें देखो तीन लड़के नजर आ रहे हैं।

एक हाथ में बैट है बला है दूसरे के हाथ में बॉल है और वो फील्डिंग कर रहा है और वो बैटिंग कर रहा है।

और यहाँ पर देखिए दो-तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं सामने देखो बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर देखो कुछ बना हुआ भी है ऊपर बिजली की तारे दिखाई दे रहे हैं।

हेलो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बड़ा सा एक महाविद्यालय नजर आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है सुखदेव मुख लाल।

और यहां पर देखिए नेताजी झंडा लेहरा रहे हैं यहां पर सामने जो अ कुछ लोग खड़े हुए हैं।

पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है और काफी सारे यहां पर एक्सरसाइज की मशीने रखी हुई है सामने कुछ लिखा हुआ है जिसपे लिखा हुआ ड्रीम भी--

और काफी सुंदर सी ये दुकानें नजर आ रही है खाने-पीने का सब मिठाइयां बहुत सुंदर लग रही है बहुत टेस्टी मिठाइयां दिख रही हैं।

और काफी कलरफुल सामान है पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर ढेर सारे पोट --

पोट है चाय के कप है और प्लेटें हैं।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा सामने एक मुझे झरना बहता हुआ नजर आ रहा है और झरना काफी खूबसूरत लग रहा है चट्टान में से यह झरना बह रहा है और --

जिसका पानी देखो काफी साफ दिखाई दे रहा है आसपास बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने दो चार-पांच व्यक्ति भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं सामने एक लड़का दिख रहा है स्टेज पर।

और दिल बना हुआ है वहाँ पर स्टेज पे ऊपर काफी सारी लाइटें भी नजर आ रही हैं।